जहां से की ये जहाज के अंदर से फोटो --

ये कोई प्रशासनिक भवन है यहां पर लोग जो है ऑफिसियल पे जो लोग अपने सीनियर ऑफिसर --

वही से जहाज वन उतरता है और उड़ता भी है।

क्योंकि अभी के समय मे हिन्दू धर्म जो है।